में फूलों की तरह सजा हुआ और डिज़ाइन जो बना है बहोत पुराना राजा-महाराजा लोगो की --

सर्कस स्वरकस होगा बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां --

फोटो है या सीन है यहां खाई को लिया गया है जो पर्वत को उसके नीचे हिस्सा को और बहुत सारे यहां पत्ता दिख रहा है।

और अंदर घुसने के लिए गेट जैसे बना है वो बहोत सुन्दर बना है और इसमें एक मूर्ति-उरती भी बना है मूर्ति ऐसे लग रहा है गौतम बुद्ध का है और छोटा-छोटा और कुछ-कुछ--

चारों तरफ फैला रहा है पानी को और घास को सुंदर बना रहा है उल्हा उल्हा और बगल पेड़ पौधा है।

टाइल से लगा है एक बाल्टीन है इस मछली का रेट शायद दो सौ पचास तीन सौ किलो होगा --

बिन के पास खड़ा हैं ।

सफ़ेद कलर में पोताया गया हैं ।

नंदी में लोग नहाने के लिए आते हैं ठंड का मौसम है कोई कपकपा रहा है कोई सूर्य की ओर --

और ट्रक बहुत नीचे गिर गया है और यह जंगल है जैसे लग रहा है पेड़ पौधा भी है।

इन लोग के चेहेरे को देख कर तो लग रहा है बहुत सारा पसीना लगा हुआ है बहुत मेहनत किए है दोनों बेचारे एक सेल्फी बहुत अच्छे दिख रहे है।